बॉयज हैकि बैठ के सीख रहे हैं कोई क्लास लग रहे उनकी हैं कि कंप्यूटर की--

जो कि फोटो स्टूडियो की तरह की तरह लग रहा है और जो शीशे हैं।

और अंदर जो है अ काफी कुर्सियां रखी हुई हैं रेड कलर में और एक टेबल रखी हुई हैं।

संस्थापक संसाधन संसाधान पटना--

सामने एक सनसेट देखने के लिए मिल रहा--

ये परफोमस किया होगा लड़कियों ने जिन्होंने ड्रेस राधा की है अं साड़ी थी--

यहां जो है सामने काफी सारी बाइक्स खड़ी हुई है और सामने एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और अपने बाइसेप्स दिख रहा है। उसने एक हूडी कलर की डाली हुई है सैंडो और सर भी ढका हुआ है उसी से रेड कलर का है।

बिल्डिंग हां बिल्डर लग रहा है जिसने कि सर पे हेलमेट लगा रखा है आंखों में चश्मा पहना है।

और एक ग्रीन कलर की जैकेट डाल रखी है और ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

और उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस डाल रखी जो नीचे लेटे हुए उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस डाल रखी है तो ये स्कूल का परफॉर्मेंस है इसका है बी_डी वर्ल्ड स्कूल ।

आह सामने जो है एक बीच को जो एक छोटा सा गमला रखा हुआ है और और उसके ऊपर एक सर्कल एक ट्रेन जैसी पटरी है सर्कल मे।

सामने जो है एक गाड़ी खड़ी हुई है ग्रे कलर की है उसी के बगल से एक ऑटो वाला जा रहा है।

सामने जो ये दो बाइक खड़ी हुई है ब्लैक कलर की बाइक है दोनों और एक--